जा रहे है कुछ आदमी खड़े है कुछ आ रहे है एक आदमी लाल कलर की शर्ट पहने हुए हैंडबैग लिए हुए जा रहा है।

यँहा एक हॉल दिखा रहा है उस हाल की छत का कलर सफ़ेद है और उस छत में लाइटिंग लगी हुई है।

और उसमें पीछे नीले कलर का पर्दा लगा हुआ है एक लाल कलर का पर्दा लगा हुआ दिख रहा है।

यह एक फल की दुकान है उस दुकान के सामने बहुत सारे फल रखे हुए है एक आदमी दुकान चला रहा--

बह सफेद कलर की बनियान पहने हुए मुँह पर मास्क लगाए हैं दो आदमी सामने खड़े हुए है।

और बोहोत सारी बिल्डिंगे दिख रही है कुछ आदमी खड़े हुए है एक आदमी व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए खड़ा है ऑटो के साइड मे।

यहाँ एक पहाड़ दिख रहा है कि बहुत ऊँची चोटी है और उस पहाड़ पर पेड़ लगे हुए हैं।